एवं इसके अगल बगल बड़े बड़े पेड़ पौधे और खाली मैदान भी दी--

यहां पर कई सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक रिक्शा वाला भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर लोहे की मदद से गोल गुंबद सा कुछ बनाया हुआ है।

मंदिर को लोहे की रेलिंग से घेरा गया है एवं इसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कई सारे मजदूर दिखाई दे रहे हैं यहां पर इसके अगल बगल बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे है।

एवं कई सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

अलमारी में कांच भी दिखाई दे रहा है एवं यहां पर एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां एल्यूमिनियम एवं कांच की मदद से बनाई गई हैं बिल्डिंग में तरह तरह के डिजाइन भी दिखाई दे रहे हैं।

एल्यूमिनियम के रेलिंग भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बिल्डिंग का कलर ब्राउन ग्रे एवं वा--

गुब्बारों का कलर व्हाइट एवं रेड हैं यहां पर एक काउंटर भी दिखाई दे रहा हैं जो की लकड़ी एवं कॉच की मदद से बनाया गया हैं।

यहां पर बस में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं जो की लोहे की है।

नदी में बहुत ज्यादा पानी है एवं नदी में कहीं कहीं बालू और कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा है।

यह एक किराना दुकान का दृश्य है जहां पर काउंटर में कई सारे डिब्बे रखे गए है।

यहां टेबल पर एक फोन भी दिखाई दे रहा है एवम वाटर बॉटल भी दिखाई दे रहा है।

एवं एक पंखा भी दिखाई दे रहा है यहां पर कई सारे कुर्सियां भी हैं जो कि लोहे की हैं।

यह एक चर्च का दृश्य है जहां पर चर्च के चारों और बड़े बड़े पेड़ पौधे एवं बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कई सारे डिब्बे हैं एवं उनमें कई सारे मछलियां भी हैं।